इस पिक्चर में मुझे एक वाइट कलर की मस्जिद दिखाई दे रही है जिसमें ग्रीन कलर का टेंट लगा हुआ है इसमें कुछ लोग नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पार्क में मुझे एक अ एलीफेंट की स्टैचू दिख रही है।

एक पिंक कलर का टोकरा दिख रहा है और किसी आदमी का हाथ भी दिख रहा है जिसने चाट पक ड़ी हुई है।

नीचे एक शॉप दिख रहीं हैं बोर्ड में चंदीगढ़ व्हिडियो गेम्स इले--

इस पिक्चर में मुझे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है।

और कार के साथ एक आदमी भी खड़ा हुआ नजर आ रहा--

और मगरमच्छ के दूसरे साइड हरी भरी घास भी लगी--

और गार्डन में रेड कलर के फूल भी लगे हुए हैं।

एक हॉल दिखाई दे रहा हैं जहां पे बोहोत सारे बच्चे बेंचेस में बैठे हुए हैं।